कोई गुफा है जो की बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर कुछ दीवार पर वाइट कलर की लिखी हुई है ये अँधेरा यह रात का सीन है जो की बहुत ही अंधेरा है और एक आदमी है जो वहाँ गुफा के अंदर घुसे हुए है और इधर कुछ लाइटिंग आ रही है।